विंडो लगी है यहाँ पे पेड़ भी लगे हैं खुला आसमां भी है।

इसके अं पार्क के अंदर बहोत बड़े पेड़ पौधे हैं वहाँ पे सब घुमने आते हैं छोटा सा गेट लगा हुआ है।

यहां उसके हवेली के बाहर बहुत बड़ा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे बैठने के ओटले बने हैं ओटले का कलर ग्रीन है हवेली मे एक ही विन्डो है।

यहाँ दो बिल्डिंग है दो बिल्डिंग का घर का तैयारी हो रही है यहाँ पे बहोत सारी स सरिया लगी हैं बिल्डिंग में बहोत सारी विंडो दे रखे हैं।

यह एक कंपनी-कंपनी बहुत लंबी चौड़ी है कंपनी का एक ब्लैक क्रीम व्हाइट कंपनी का दरवाजा ब्लैक कलर --

आ एक होटल का व्यू है होटल में रंग-बिरंगे फू बलूंस लगे हैं फूल लगे हैं सोफे लगे हैं कुर्सी लगी --